यह चित्र एक पेट्रोल टैंक का है जहा ऊपर की और नारगी रंग की उसकी छत पुती हुई दिख एक बिजली का खम्बा दिख रहा है पेड़ दिख रहे है हरे रंग के खाफी सारे

चित्र में एक ग्राउंड दिख रहा है जहां हर्रे रंग की सामने की और बिल्डिंग बने दिख रही है पेड़ बने दिख रहे हरे रंग के आसमान --

एक रोड दिख रहा है खाफी सारे लोग द--

यह चित्र एक जगह का दिख रहा है जहाँ गोल सा गेट बना हुआ है आसमान दिख रहा है कुछ ऊपर की ओर--